लाइट है उसके अंदर शीशा लगा हुआ है ।

पीला कलर है लाल कलर का है ।

मोबाइल चला रहा है ।

यहाँ लेबर लोग है उसमे काम कर रहे हैं |

उम्म बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है दो बिल्डिंग है।